घुस पैड लगी बनी हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं।

'' यहाँ पर मुझे एक क्लास रूम दिखाई दे रही है जिसमे बोहोत सारे बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत सारे टेबले रखी हुए दिखाई दे रही है यहाँ'''' पर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही-- ''